ये कुछ रेस्टोरेंट है इसमें चार जनों का फेस ब चार पांच ब जनों का फेस ब्लर हो रहा है।

एक कंप्यूटर लैब है इसमें फैन चल रहे है ए_सी लग रही है और बहुत सारी चेयर है और बहुत सारे कंप्यूटर भी हैं।

व्हाइट कलर का एक एक खाकी से कलर का--

दूध औऱ चाय पेस्ट्रीज हैं औऱ यहाँ पे एक बच्चा खड़ा है जो औऱ एक अंकल हैं जो उनसे फोन देख फोन चला रहे हैं।

सामने एक चाय की दुकान है और नीचे डस्टबिन रखे हैं और इसमें बहुत सारे प बिस्कुट वास्कुट से रखे हैं।

तीन चार का नहीं ज्यादा का ही सारो का हो रहा है लगभग थोड़े से ही है जिनका नहीं हो रहा है।

ये कंटेनर में बहुत सारा सामान रखा इसमें गेहूं रखे हैं।

काम कौन सा कर रहे हैं।

साइड में स्कूटी भी खड़ी है और ये शॉप है।

ये पीछे कुछ शॉप सी लग रही है घर सा ही लग रहा है।

सुधा पार्लर है कुछ और उसमें बहुत सारे--

यहां पे रेल आती है ट्रेन ट्रेन आती है इधर।

पीले र कलर पीले रंग का है डिब्बा रखा है इसमें कलर का और रेड कलर का डिब्बा रखा है।

खोदने खादने से लग रहा है समान इसमें।

यह घर में खड़ी और इसमें रही है।

और इसमें बहुत सारे बलून लग रहे हैं इसमें और बोतल बातल सी रखी है कोल्ड ड्रिंक रखी है और सोस सास की भी रखी है बोतल ।

और वहां ठंडे के वह भी रखे हैं को--

इसमें सामने एक गोल गोल से वो हो रे इसमें से पानी पूनी सा निकलता है।

पीछे भी बहोत सारी स्लाइड स्लेड है यही बहुत बड़ा स्विमिंग पूल है ऊपर बादल हो रहे हैं।

बादल हो रहे हैं काड़े काड़े से हो रहे हैं बादल--

उन्होंने कपड़े नहीं पहन रखे बनियान में है और बाहर एक जनरेटर रखा है एक--

इसमे बहुत ब्रश भी रखे हैं और बच्चों के बैग हैं पिठू बैग से भी है इसमें।

और यह ट्रॉली इससे बडी बैग भी हैं।

ऊपर बालकनी में और इसमें फूल फाल भी रखे हैं और पेडे हैं।

यहां पे योगा कर रहे हैं इसमें--

ये मुझे कई चीज की फैक्ट्री लग रही है।

चार पाँच छः मूर्ति रखी है मतलब पत्थर से रखे है।

और इसमें बहुत सारी कुर्सी कार्सी सी पड़ी हैं।

और गाड़ी खड़ी है इसमें शीशे भी लग रही है इसमें।

और एक अंकल बाइक पे जा रहे हैं हेलमेट एक अंकल फोन चला रहे हैं।